ये एक पुरानी ईमारत की दृश्य है।

और दो व्यक्ति रोड पे जा रहे हैं।

भगवान को माला भी पहनाए गए हुए है।

और अगल-बगल शीशे के।

यहाँ पे बोरे में कोल् भरे हुए हैं।

ट्रांसफार्मर की भी फोटो है।

और ये रात का समय हो रहा है।

और हर एक चीज को व्यवस्थित ढंग से अलग-अलग ताकों पे रखा गया है।

यहाँ पे बच्चे अपने द्वारा बनाई गई तस्वीर --

पीछे घर है अगल-बगल और एक गली है।

यह एक सरकारी स्कूल का दृश्य है।